और बहुत सारे बक्से रखे हुए हैं सामने--

ये एक बहोत ही बड़ी बिल्डिंग है।

और लाइट्स के साथ सजाया गया है इसको।

बहुत सारे लोग यहां पे इकट्ठे हुए पड़े--

और बड़े बड़े वृक्ष यहां पे लगे हुए हैं।

यहां पे डेकोरेशन की गई है लाइटें लगी हुई हैं।

ये एक बहोत बड़ी क्यारिल में बनी हुई है।

पडा हुआ है और अच्छे से यहां--

काफी अच्छे से यहां पार्क को--

बहोत ही सुंदर यहां पे जगह बनी हुई है।

गाड़ियां पार्क की गई हैं बोर्ड बना हुआ है।

ये एक बहुत ही बड़ी गाड़ी है ग्रे कलर की गाड़ी है और ये यहां पे पार्क की गई है।

एक बहुत बड़ी पार्क है पार्क बहुत ही सुंदर है हरी हरी घास लगी हुई है और बड़े बड़े ब्री--